दीवार को व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

स्विमिंग पूल में पानी सूख गया है।

सामने में एक लंबा सा पाइप रखे हैं।

यह फोटो में दो आदमी दिखाई दे रहा है।

नीचे में बहुत सारा आदमी लोग खड़ा होके है।

फोटो में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

इसमें जितने भी टाइगर रिजर्व में मतलब वह फॉरेस्ट एरिया में जो भी टाइगर देखना चाहता है या एनिमल देखना चाहता है इस बस में बैठने के बाद अंदर फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं।

स्विमिंग पूल के अन्दर में बहोत सारा आदमी है।

यगा ऊपर में एक वॉल फैन लगा हुआ है वॉल फैन के बाजू में स्पीकर है स्पीकर के बाजू में एक वाइट कलर का बल्ब भी लगा हुआ --

दुकान का अंदर में खाने पीने का बहुत कुछ सामान है।

दरवाजा का सामने में ग्रीन कलर का डोर मेट बिछा के हैं।

कपड़ा जो है पैकिंग करके रखा हुआ है प्लास्टिक के अंदर में।

ये एक जुंबा क्लास है और डांस क्लासेस भी है बच्चों की किड्स लोगों--

नीचे में थोड़ा कचरा सा भी गंदा किया हुआ है।

हर आदमी बैठा हुआ है एक आदमी खड़ा होके सीखा रहा है।

दो आदमी का फेस में ब्लर करके है।

दुकान का अंदर में ग्रीन कलर का तीन थू चेयर रखा हुआ है।

खिड़की ग्लास से बनाया हुआ है।

यह फोटो में पार्किंग दिखाई दे रहा है।

स्विमिंग पूल का पानी पूरा ब्लू से है।

यह फोटो में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

दीवार में बहुत सारा बैलून लगा के।